यहाँ पर कद्दू और गाजर आलू और प्याज नजर आ रही है दुकान बहुत छोटी सी दिख रही है।

यहां पर दो वाहन नजर आ रहे हैवाहन के कांच भी दिख रहे हैं।

यहां पर बड़े-बड़े झूले रखे हुए है ये झूले पर से पानी गिरता हुआ नजर आ रहा है बच्चे भी दिख रहे है।